ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञानियों का कोई बिधान चल रहा है यहाँ पर ज्ञानियों टाइप मंदिर जैन समाज के लग रहे हैं।

यहाँ भी एक बिल्डिंग का काम खेंच के चल रहा है तेजी के साथ चल रहा है एक दादाजी तसले लेकर आ रहे है ऊपर चढ़ा रहे है कुछ बाल्टियां भी रखी है कुछ तस्कारे कुछ रस्सीयाँ भी कुछ अम्म बाँस के डंडे भी दिखा रहे है।

कस कससे कर रहा है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा हे।